ये एक बड़ा सा मॉल है इस मॉल में काफी दुकाने लगी हुई हैं ये हमें पौधे फूल के पौधे रखे हुए हैं।